लाल दिखाई दे रहा है और यहा सड़क का काम चालू हे दिखाई दे रहा है और यहा पर हरे कलर का जैकेट पहने सफ़ेद कलर का --

यह पर बहुत ही बड़ा गाडन दिखाई दे रहा हैजिस में बहुत सारे पेड़ लगे दिखाई दे रहे है।

और नीले कलर का कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है और हमें यहां पर कांच की दीवार नजर आ रही है और हमें यहां पर बहुत सारे--

लाइट दिखाई दे रही है और हमें यहां पर बहुत सारे पंखे नजर आ रही है और हमें यहां पर एक--

और यहा पर हमें फर्श दिखाई दे रहा है जो कि सफेद कलर का हैऔर यहा पर लड़का दिखाई दे रहा है जो कि हरे कलर का कपड़ा केप पहने सफेद कलर की टी-शर्ट दिख रहा है और हमें यहा पर बहुर सारी--

हमे यहाँ बहुत सारे बच्चो के खिलौना दिखाई दे रही है और बहु बहुत सारे दुकान दिखाई दे रहे है और बहुत बड़ा बोर्ड दिखाई दे रहा है जो की लाल और नीला कलर का है और यहां पर बहुत सारे फुग्गे है जो की लाल और नीले कलर के है।

और हमें पुल के नीचे से बहती हुई बोहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है जिसमे की एक बोट दिखाई दे रही है।

शादी का मंडप दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बहुत सारे पिंक कलर के पर्दे दिखाई दे रहे है और यहाँ पर हमें बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे है।

और हमें यहाँ पर वजन नापने का एक प्लेट दिखाई दे रहा है और हमें एक आदमी दिखाई दे रहा है जिन्होंने काला कलर का पेन्ट पहना हुआ दिख रहे हैं।

दुकान दिखाई दे रही है जो की सफेद कलर की है उसका छत नजर आ रहा है और हमें यहाँ पर बहुत सारी लाइटे दिखाई दे रही है और हमें यहाँ पर बहुत सारे फूल नजर आ रहे है और हमें यहाँ पर--